यह दुर्गा जी की मूर्ति है |

जो खराब होने वाली चीज है वो इसमें रखा गया होगा जिससे खराब न हो फ्रिज इसमें काम आता है।

फर्स्ट जनवरी मनता है।